कुछ बोर्ड्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी बर्फ पड़ी हुई--

बर्फ से पेड़ और घर ढके हुए नजर आ रहे हैं।

एक आदमी काउंटर पर नजर आ रहा है।

यहां पर एक मंदिर नजर आ रहा है।

यहां पर एक तालाब नजर आ रहा है।

बड़ी बड़ी चट्टाने नज़र आ रही है।

एक गमला नजर आ रहा है।

और कुछ कुर्सियां नजर आ रही है।